बस के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है जिसकी सर शर्ट का कलर लाल है।

योगा सेंटर का नाम कीर्ति टैलेंट एंड एज एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है।

यह दृश्य एक जिम का है जहाँ पर तीन ट्रेडमिल लगी हुई हैं।

एक व्यक्ति ग्राउंड पर बैठा है जिसकी शर्ट का कलर हरा है।

एक व्यक्ति थाली को उठा रहा है और एक पंखा दिख रहा है जिसका कलर सफेद है।

लड़की के पास में एक लाल रंग की लाइट लगी हुई है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है जिसकी शर्ट का कलर पीला है।

सैलून के ऊपर लाल रंग से पेंट किया हुआ है और कुछ स्टेज बनी हुई है जिनका कलर काले रंग से पेंट किया हुआ है।

ऐसा लग रहा है कि यह एक मेडिकल हो और कुछ पर्दे पड़े हुए हैं।

यह दृश्य एक जन सेवा केंद्र का लग रहा--

पीछे की तरफ एक बाइक खड़ी दिख रही है जिसका कलर ब्लैक और रेड है।

पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कुछ छोटे छोटे शब्दों में कुछ लिखा हुआ है।

यह दृश्य एक जंगल का लग रहा है जहां बहोत से हिरन दिख रहे हिरनो--

आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

फोटो क्लिक करने वाले व्यक्ति की टीशर्ट का कलर सफेद है।

पहाड़ी पर घास दिखाई दे रही है जिसका कलर हरा है।

एक व्यक्ति एक बच्ची को कुछ मेडिसिन दे रहा है।

यह दृश्य एक शोरूम का लग रहा है जहां बहोत सी टॉयलेटे रखी हुई हैं।

पास में हरी भरी घास दिख रही है और बहो एक नल लगा हुआ दिख रहा है और एक--

पीछे एक मकान सा बना हुआ दिख रहा है और जे एक एक जाली लगी हुई है।

मंदिर का कलर गुलाबी और सफेद रंग से पेंट किया हुआ--

चट्टानों से भरी हुई है और कुछ तार दिख रहे हैं।